यहाँ से मकान का काम मकान बन रहा है। मल्टी बन रही है। यहाँ पे पिलर दिख रहे हैं। एक अंकल वहाँ पे भोत सारी मिट्टी नज़र आ रही है और वहाँ से बोरी नज़र आ रही है। फावड़ा नज़र आ रहा है। बांस दिख रहे हैं।

एक अंकल बैठे हुए हैं और वहाॅं से कुछ पत्थर नज़र आ रहे हैं और अंकल ब्लैक कलर की पैन्ट पहने हुए है व्हाइट कलर की जूते पहने हुए हैं और ग्रे कलर की शर्ट पहने हुए हैं।

बड़ी-बड़ी मशीने नज़र आ रही है। एक अंकल ऊपर खड़े हुए हैं और एक अंकल नीचे खड़े हुए हैं और उनके पास दो बाल्टिए भी रखी हुई हैं और एक स्टील का बड़ा टप भी रखा बड़ी बाल्टी भी रखी हुई है।

उनके पैर में दो जूते हैं और हाथों में भी जूते हैं और एक हाथों पर है उस पे ब्लैक कलर का जूता है पीछे बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं और अंकल के सर पे व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का एक हैट लगा हुआ है।

रेड कलर का मग्गा लगा हुआ है एक अंकल खड़े हुए हैं और दो बैंच रखी हुई हैं।

प्लेटे उस पर पिंक कलर का कलर रखा हुआ है और एक ग्रीन कलर का कलर भी रखा हुआ है और यहां से बहुत सारे पीछे पौधे भी दिख रहे है और एक ग्रीन कलर के बहुत सारे ग्रीन कलर और पिंक कलर --

यहाँ से एक कत्थे कलर का बोहोत बड़ा गेट नज़र आ रहा हैं घर में और एक पेड़ भी दिख रहा है और अंदर लाइटे भी लगी हुई है। एक बाइक भी खड़ी हुई है और कत्थे कलर का एक गेट लगा है और लाइट भी --

यहाँ से एक गेट दिख रहा है एक मल्टी है उसके नीचे ए एक गेट है और उसके सीढियाँ भी दिख रही हैं एक दो अंकल खडे हुऐ है और वो ताला खोल रहे हैं और एक अंकल ल ब्लू चेकस की शर्ट पहने हुए हैं ।

इस ग्रीन कलर के भो हमें यहाँं से फर्श नजर आ रहा है। ग्रीन कलर की इसपे घास दिख रही है और पेड़ भी दिख रहे हैं।